दरियाव है दरियाव मे एक नाव है नाव पे बहुत अच्छी सुंदर है उसमे भी हम दिख रहे है।

एक कपड़े का दुकान है कपड़े में बहुत अच्छे-अच्छे दुकानों में बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े रखे हुए हैं।

ये सीता-माती स्टेशन है रेलवे स्टेशन यहां सब जगह की नारियाँ मिलती हैं।

ये उत्सव दिख रहे हैं बहुत अच्छे उत्सव मनाए हुए हैं एक औरत भी है महिला भी है।

बहुत शोभनीय है मकान में रंग-बिरंगे फुल और शोभनीय बत्ती बिजली भी टंगे हुए हैं।